बहुत सुन्दर बिल्डिंग दिखाई दे रही है पेड़ भी बहुत सुन्दर लगे हुए हैं बहुत सुन्दर आसमान दिखाई दे रहा है और चिड़ी भी बहुत सुन्दर है बहुत बड़ी है बहुत--

के साइड में बी.बी.ए. बी.कॉम बी.यू.सी. टेक्नॉलॉजी कॉलेज ऑफ कॉमर्स की कोचिंग हैबहुत ही सुंदर।

बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है यहाँ पर और एस.के. बुक सेंटर ग्राहक सेवा केंद्र और यहाँ बहुत ही अच्छी सी दुकान है पीछे पेड़ लगे हुए है।

और बहुत ही सुन्दर तरीके से यह रिक्शा रखे हुए हैं। नाइ निटी को निटी नि नि नाईट को यहाँ हैं।

और यह बैलून भी लगे हुए हैं रेड एंड वाइट और बल्ब तो बहुत ही सुन्दर लगे हुए हैं।

और टेबल पर ब्रेड भी रखा हुआ है टेबल रखी है टिशू पेपर भी है।